यहाँ सामने की और बहोत सारे पत्ते वाले पेड़ दिखाई दे रहे है पत्ते छोटे-छोटे से दिखाई दे रहे है।

यहाँ सामने की ओर एक बड़ा-सा मैदान दिखाई दे रहा है जिसमे ब सामने की ओर ताला भी दिख रहा है एक बड़ा-सा खम्भा भी लाइट का लगा हुआ है।

यहाँ सामने की ओर एक होल दिखाई दे रहा हैं।